स्कूटी बाइक्स वगेरा दिखाई दे रही है रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे बोहत सारी अ मैदान भी दिखाई दे-- कुछ पुरुष भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ टंकी वगेरा भी दिखाई दे रहे ऐसा लग रहा है यहाँ

यहाँ पे बहोत अच्छा सामान दिखाई देने का दिखला ओला बॉउंड्री बना गा बिल्डिंग बना गया और कुर्सी वगैरा सामान बहोत सारा पडा।

यहाँ पे मेरे को एक पार्क टाइप बहोत बड़ा जंगल टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है हरियाली दिखाई दे रही है पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

पर मुझे बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ ए_टी_एम दिखाई दे रहा है। ए_टी_एम भी बनाया गया हैउसपे शटर लगा इसमें शटर से बंद किया। इसके अंदर भी कुछ व्यक्ति शायद दिखाई दे रहे हैजिनके पाँव दिखाई दे रहे है।